यह ए के जीम फिटनेस है ट्रोफिया है।

नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े चट्टान से टूटे हुए पत्थर पड़े हुए है।

यहाँ सीमेंट और सरिये की मदद से घर को खड़ा किया गया है।

जैसे की मै देख पा रही हूँ एक दीवार पे बहुत ही सुंदर सी शीतकारी निकाशी की गई है।

जंगल में बहुत बड़े बड़े और बहुत पुराने पेड़ लगे हुए है।

इस विद्यालय का नाम भगीरथी माध्यमिक विद्यालय है।

इस ट्यूशन का नाम कीर्ति योगा इंस्टीटयूट है।